और इसमें बहोत सारे ग्लास --

मुझे इस तस्वीर में एक कॉलोनी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक होटल दिखाई दे रहा है।

मेरे अनुसार इस तस्वीर में एक जिम का दृश्य--

बहुत सारी छोटी मछलियां अभी रखी हुई हैं यहां--

मुझे इस तस्वीर में एक काले रंग की कार दिखाई दे रही है।